और छेनी है आस पास लकड़ी के बम्बू लगे हुए हैं ।

एक इमारत नजर आ रही है जिसके ऊपर जिला स्वास्थ समिति लिखा हुआ है।

इमारत के सामने बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है।

उस झांकी के ऊपर दो आदमी खड़े हुए है जिसमें से एक ने चेक्स की लूंगी पहनी हुई है।

एक सिस्टर नजर आ रही है जिन्होंने सफ़ेद कलर की ड्रेस पेहनी हुई है।

जिसका आअ हरे कलर का पर्दा लगाया गया है बाहर हरे कलर के पर्दे लगाया हुआ है जिसपे पारी-पारी फूल बने हुए है।

उसी के ऊपर एक पिंक कलर की फूलो की से सजाया गया है।

उसने अपना सर तकिए के ऊपर रखा हुआ है।

रोड के उस पार हमे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसपे एस.बी.आई. का बोर्ड लगा हुआ है ।

उस इमारत के बाहर पेड़ लगे हुए हैं पौधे लगे हुए हैं |

एक आदमी बैठा हुआ है तो एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने स शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और सर के ऊपर सफ़ेद कलर का गमछा लपेटा हुआ है।

उनके पीछे कुछ आ दमी उम्म और औरते खड़ी हुई है जिसमे से एक औरत ने पीले कलर की कुर्ती और हरे कलर की लेगी पहिनी हुई है।

साथ में एक काला दुपट्टा ओढ़े हुए है हाथ में पर्श है।

जिसके ऊपर एक गोल आकार का गुमत है।

लिंग दिखाई दे रही है जो लाल कलर से पुती हुई है उसपे एम बाजार लिखा हुआ है।

दुकान नजर आ रही है । जिसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है । जिसके जिसने टी-शर्ट पेहनी हुई है | ज --

और सेफ्टी जैकेट पिहना हुआ है।

उस गुंबद के चारो तरफ चार गुंबद और बने गए है।

दुकान दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर मिथला बुक सेंटर लिखा हुआ है।